जो कि पैसे निकालने के लिए यूज होती है इसमें कुछ--

इसे शायद ट्रामा सेंटर भी बोलते हैं।

स्टीकर भी लगा है और ला लाइब्रेरी में जो बड़ी बड़ी अलमारी टाइप हैं उनमें बुक वगैरा किताबें भी है पंखे भी लगे हैं।

फोटो भी है जहां पर कुछ लोग पैसे निकाल रहे हैं।

जोकि किसी मकान को ऊपर करती प्रतीत हो रही है।

बाहर की ओर कुछ व्यक्ति है जो की बाहर खड़े है और अंदर की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और छोटे छोटे सोफे भी लगे हैं कुछ नीचे चप्पलें पड़ी है ऊपर लाइटिंग वगैरा लाइटिंग का प्रोग्राम बहोत ही अच्छा और शानदार बनाया गया है।

उम्म नजारा तो बहुत ही कांच वगैरह है जो कि आसमानी कलर के बीच में कुछ ब्लू कलर के भी दिखाई दे रहे नजारा बहुत ही सा सुंदर प्यारा दिखाई दे रहा है।

पास में मच्छी है कुछ लेटे हुए हैं कुछ सो रहे हैं।

फोटो काफी अच्छा और शानदार दिखाई दे रहा--

आसमान काफी साफ और सुंदर दिखाई दे रहा है फोटो में नजारा काफी अच्छा और प्यार है।

इस फोटो में कुछ लोग है जो कि बजरी पर बैठे हैं और आनंद कर रहे हैं पीछे खंभे वगैरह लगे गए हैं कुछ हो रहा है।

इस फोटो में कोई मंदिर दिखाई दे रहा है ऊपर झंडे भी लगे हैं अ और ऊपर का आसमान भी काफी साफ दिखाई दे रहा है।

कुछ ईंटों का कोई मकान या फिर ईंटें ही है गेट है जोकि सफेद कलर का लोहे का बनाया कर दिखाया गया है।

ब्ल्यू कलर का है ऊपर एक नीम पड़ा पौधा दिख रहा है पीछे मिट्टी वगैरा भी दूर भी काफी पौधे वगैराह दिखाई दे रहे हैं।